और यहाँ पे काफी महंगे कपड़े मिलते है लोग आते है यहाँ पे कपड़े खरीदने।

और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बाल काटा जाता है।

यहाँ पे लेडिस जेन्ट्स सभी के कपड़े उपलब्ध होते है । यहाँ पे लोग आते है। कपड़े खरीदते है । यहाँ पे बोहोत ही सस्ते दामों मे कपड़े दी जाती है ।